और ढेर सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में पहाड़ नजर आ रहे हैं पहाड़ से पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां आसमान दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर की है।

पंखा चल रहा है सामने की दीवार पे एक बोर्ड लगी है।

पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जिस रेड और वाइट कलर की है उसका द्वार पाया दिखाई दे रहा है।

दृश्य में एक स्कूल रूम की तस्वीर दिखाई दे रही है।